कई अलग-अलग प्रकार के यूनिवर्सिटी होती है और यूनिवर्सिटी के अन्दर जो है बोहोत ढेर सारे जो है स्कूल आते हैं। इसलिए इस क्रम मे जो है जब यूनिवर्सिटी जायेंगे तो यूनिवर्सिटी पता चलेगा की यहां ये यूनिवर्सिटी है। क्योकि वहाँ की जो --